और यहाँ पे छोटे -मोटे पौधे लगे हुए है यहाँ पे बलून से सजावट किया गया है और यहाँ पे स्टेज बनाया गया हैं ।

एक बिल्डिंग बहुत ऊंचा है जो सादे रंग का है और एक लाल रंग का बिल्डिंग दिख रहा हैं।

एक टॉय ट्रेन दिख रहा हैं जिसमें ये रेड रंग का हैं और यह कोई पार्क का तस्वीर हैं।

और यहाँ पे काले रंग का कुछ है और व्हाइट रंग की गाड़ी हैं।

जो ग्रीन कलर का है और एक ब्लू रंग का यहाँ पे प्लास्टिक रखा हुआ हैं ।

और दूर मे एक बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे टावर भी दिख रहे है अगल-बगल पे यहाँ पे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए है जो बहुत खूबसूरत लग रहे है देखने में यहाँ पे टॉवर भी लगा हुआ हैं ।